इस दश्य हमें एक दुकान के अंदर का दिखाई दे रहा है जिसमें हमें बहोत सारी --

साधन जैसे स्कूटी व बाइक खड़े हुए हैं कुछ साधनों का मुंह अंदर की तरफ --

शीशे में देखकर डांस कर रही हैं व दीवार के ऊपर बहुत ही सुंदर तरीके से डांस लिखा हुआ है।

आसमान में लालिमा छाई हुई है आसमान बिल्कुल साफ है आस पास की बिल्डिंग व्हाइट नीली व लाल रंग की है।

गुफा के ऊपर काफी पेड़ पौधे हैं गुफा के अंदर एक महिला है जिसने लाल व पीले रंग की साड़ी पहनी हुई है।

ब्लैक कलर के पिल्लो रखे हुए हैं सामने गंगा गंगा लिखा हुआ है व कुछ टूटियां व टॉयलेट सीट्स हैं।

यह दृश्य एक मंदिर के अंदर का है मंदिर मे राधाकृष्ण की सिल्वर की मूर्ति लगी हुई है।

इसके ऊपर बीकानेर का एकमात्र हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम --